इसमे चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़ छोटे-छोटे पेड़ नज़र आ रहे है जिसमे हरे कलर की पत्तिया लगी हुई है।

सामने कि तरफ़ लगी हुई है ऊपर की तरफ़ छत डला हुआ है उसमे चारों तरफ़ प्लैंटेशन किया गया है। इसमे ऊपर की तरफ़ फूल लगे हुए है जो रेड कलर के है इसके चारों तरफ़ शिलाए लगी हुई है।

बड़ी-बड़ी चट्टान है चट्टानों के ऊपर बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए है जो हरे-भरे पेड़-पौधे लगे है।

बिल्डिंग है सामने कि तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है उसके सामने एक बड़ा सा रोड है जिसपे एक ऑटो जा रहा है पीछे कि तरफ पार्किंग एरिया भी बना हुआ है यहाँ पर बहोत सारे वाहन स्कूटी खड़ी हुई हैं

हॉल है जिसकी मरम्मत का काम चल रहा है सामने कि तरफ इसमें जाली बंधी हुई है बाँसों की

बुक स्टैशनेरी की दुकान है यहाँ पर एक काउन्टर पर पेन रखे हुए हैं पेनों के डब्बे रखे हुए हैं एक व्यक्ति अंदर की तरफ ग्राहक को पेन दिखा रहा है

जो ऑटो की डील कर रहा है ऊपर की तरफ एक पर्दा बंधा हुआ है जिसमें दो ट्यूब लाइट जल रही हैं जमीन के ऊपर ग्रीन कलर के कार्पेट बिछी हुई है चारों तरफ परदे लगे हुए हैं

ग्राउंड है सामने कि तरफ एक बड़ा सा ग्राउंड नजर आ रहा है जिसके सामने एक बड़ी सी पार्किंग एरिया बना हुआ है जिसमे बहुत सारे बाहन खड़े हुए है

इसमें काफी पुस्तक रखी हुई हैं नीचे की तरफ एक व्यक्ति चेयर पर बैठा हुआ है दो व्यक्ति सामने की तरफ खड़े हुए हैं ऊपर सीलिंग फैन चल रहा है

इसमें चारों तरफ बुक्स ही बुक्स हैं इसमें पेन हैं कापी हैं किताबें पुस्तक हैं पेन है पेंसिल है सामने की तरफ रैक के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है|